इस इमेज में एक नदी दिख रही है नदी के पास में एक घाट है वहाँ पर हज़ारों की भीड़ में लोग मौजूद हैं।

पेट्रोल पंप का कलर ब्लू एंड ऑरेंज है यहाँ पर पेबल ब्लॉक्स लगे हुए है एक ऑटो रिक्शा दिखाई दे रही है ।

चलिए शटर लगी हुई हैं ग्रीन कलर के पेड़ नज़र आ रहे हैं।

ये इमेज किसी फंक्शन की दिखाई दे रही है पूरी बिल्डिंग पे लाइटनिंग का डेकोरेशन किया गया है।

दो प्लॉट खाली पड़े है जिनमे कचरा हो रखा है ।

सभी लोगो ने अपनी-अपनी पोजीशन धारण करी हुई है सभी लोगो ने अपनी-अपनी मैट्रेसेस रखी हुई है ।

इस इमेज में एक स्कूल नज़र आ रहा है जिसका वाइट कलर है।